चाबी लगाया है नीचे से सीढ़ियों पे भी कार चल रही है कार मे चाबी लगाया हैदेखने मे सुन्दर ऊपर से तार भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर पीले पीले बिल्डिंग दिखाई दे रहा हैदेखने मे बहुत अच्छा भी लग रहा हैदेखने मे बहुत सुन्दर भी लग रहा --

यहाँ पर कुछ कांच भी दिखाई दे रहा है जो काच लगा हुआ है कांच के अन्दर कार भी दिखाई दे रही हैऔर गाड़ी भी दिखाई दे रही है।